उसके सामने बहोत सारी बाइके भी खड़ी हुई हैं और एक पुराना सा स्कूटर भी खड़ा हुआ है और उसके और एल.आई.सी का बिल्डिंग इमारत भी बहोत खूबसूरत सी दिख रही है और धूप भी बहोत तेज दिख रही है।

एक केफे एक रेड कलर का डिजाइन किया हुआ है जिसके नीचे एक बहोत अच्छा-सा खूबसूरत से गमले भी रखे हुए हैं केफे यलो और ग्रीन में डिजाइन किया गया है।

ये लग रहा है बहोत खूबसूरत स्टेडियम स्टेडियम का कलर मेनली लाल और क्रीम कलर में डिजाइन किया गया है ये बहोत बड़ा स्टेडियम दिख रहा है।

ये एक गिराज का फ़ोटो दिखा जा सकता है जहाँ दो बुलेट खड़ी हो के रिपेयर होने को आई हैं।

ये नीचे की तरफ उतरते हुए फोटो खींचा गया है के बस जा रही है।

इस क्लास रूम का कलर मेनली ब्लू और वाईट है और कुछ-कुछ जगह पे ग्रीन भी दिख रहा है ये बहोत खूबसूरत क्लासरूम लग रही है।

ये एक बैंक का फोटो दिख रहा है बैंक के बाहर कुछ ना कुछ इंग्लिश में दिखाई दे रहा है इसके बैंक सामने बड़ी अच्छी फोटो भी दिखाई दे रही है ये बैंक का नाम का कनाडा बैंक है इसका पोस्टर नीले कलर में डिजाइन करा गया है।

और ये बेकरी महरूम कलर में डिजाइन करी गई है और ये बेकरी के आगे एक टॉय भी बना हुआ देखा जा सकता है।